भाइयो ये फल का दुकान है यहाँ पे मंगो अनार एप्पल केला--

ये गुरद्वारा या फिर किसी अ मंदिर टाइप आ नज़र आ रहा है जैसे देख सकते यहाँ का बहोत अच्छा सीन है।

बहुत अच्छा लग रहा है देखो यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है प्लस यहाँ पे बहुत सारे चित्र और फोनेपे और फोन फून सब मिलता है कापी पुस्तक पेन सब मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको हर चीज जहाँ से हम--

फ्रॉक जींस टॉप सब चीज अलाउ है और सब चीज मिल सकता है।

ऐसा टाइप दृश्य दिख रहा है बहोत खूबसूरत--

केक एक ऐसी चीज है जिसको सब लोग खाते हैं।

जोकि बहुत ही ज्यादा खंडर टाइप लग रहा है मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ कि पुताई वगेरा नहीं हुई है और यहाँ पे साफ़ सफाई भी बहुत कम होती है मेरे ख्याल से--

--सब को करनी चाहिए क्योंकि जब अगर गाय नहीं होते तो आज की आज के डेट में हम लोग भी नहीं रहते--